एक पुलिस इंस्पेक्टर भी वहा पे खड़े हुए--

लोग खड़े है वाइट साड़ी के उपर--

यहाँ एक हॉस्पिटल लग रहा है।

और ये जिम सेंटर में बहुत सारे मशीन्स है बहुत लोग आ रहे है यहाँ पे और यहाँ पे वो लोग एक्सरसाइज कर रहे है अपने बॉडी फ़िटनेस के लिए।

साइड में बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे बाइक्स है और सामने एक गाडी खड़े हुए है एक बच्चा साइकिल लेके जा रहा है चला रहा है साइकिल और कुछ आदमी और बच्चे खड़े --